चित्र में एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

और एक कुल दस्ता भी रखा हुआ है तीन चेयर रखी हुई हैं।

दो आदमी खड़े हुए हैं और एक बाइक भी खड़ी हुई--

बगीचे में झूला लगा हुआ है।

और गमले भी रखे हुए हैं।

चित्र में लोग केराम खेल रहे हैं।

और नीचे कच्ची सनी है और एक गइयों का पेड़ भी लग रहा है।

बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं और--

मेला लगा लगा है मेले में लग--

और पांच आदमी खड़े हुए हैं और सामने--

और दो कुर्सी रखी हुई है।

साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं।

बहुत सारे लोग आसपास खड़े हुए हैं।

और पीछे बिरोसी कलर की दीवार है।

पुता हुआ है वो कथाई कलर की--

जो की पिंक कलर के उस पे पोस्टर लगे हुए--

और हवाई जहाज व्हाइट और ब्लू कलर का है।

बहुत बड़ी और नदी के अंदर जहाज--

किला बना हुआ है पुराने जमाने--

व्हाइट कलर का कमरा है और नीचे--

और उसके साइड में एक बहुत बड़ा पेट लग रहा है।

और लाइटी भी चल रही है।

टॉपिंग टाउन है वन आइसक्रीम मिल रही--

और टेंट भी बना हुआ है और साइड में पेड़ लग रहा है।